दीवारों पर टैटू खाने पीने के लगे हैं दीवारों पर चित्रकार्य जो खाने पीने के दिखाई दे रही है एक व्यक्ति के पास में बैग वगैरह भी --

सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये किसी--

हाथ जोड़े हैं ये पत्थर की आकृति का बना प्रतीत हो रहा है।

ये किसी शॉप का फोटो है जहां पर--

अह प्रतीत फोटो है जो कि भगवान के प्रती है और एक कैमरा भी चालू है जिसके अंदर में इनकी फोटो आ रही है नीचे --

और एक से दो तीन लोग टेंपू के अन्दर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आसमान भी काफी साफ --

यह इस फोटो में ये रेस्टोरेंट का फोटो नहीं प्रतीत हो रहा है ये किसी कटिंग का सैलून है जहां पर --

पौधे टाइप दिख रहा है जोकि काफी शानदार और अच्छा प्रतीत हो रहा है बूढ़े बुजुर्ग भी एक साइड इस तरफ घूम रहे हैं आस पास पेड़ पौधे भी है।

काफी जो टीचर हैं वो सभी लड़ लड़कियां और लड़कों को पढ़ा रहा है और बोर्ड पर भी काफी कुछ लिखा हुआ है।

स्टोर पर हैं और मेडिकल स्टोर प्रतीत हो रहा है और ये रास्ता मेडिकल स्टोर के नाम से दिखाया जा रहा है जो कि पीले कलर में लिखा है।

और एक लड़ आदमी है जो की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गया है बाहर भी एक कुलर लगाजे लगा हुआ है और दुकान का फोटो भी --

और फर्नीचर भी हैं और लाइटें भी लगी हुई हैं सोफे हैं जोकि काले कलर के हैं और फर्श वगैरा भी काफी साफ है।